खैर यहाँं पर एक नल भी लगा हुआ है जिससे हम लोग पानी पीते हैं और अपना जीवन बचाते हैं। पानी हमारा जीवन है।

यहां पर आप देखस देख सकते हैं। यहां पर इलाबाद बैंक का पोस्टर चिपका हुआ है। यहां पर हीरो होंडा चार गाड़ी खड़ी हुई हैं जो हीरो की हैं। यहां पर मारुति सुजुकी कि अलटो भी खड़ी --

यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं इसको लाल कलर में है और यहाँ और दो स्कूटीयां रखे हुए हैं और उसके बगल में एटीएम भी लिखा हुआ आयें एटीएम से पैसे निकाले --